बहोत सारे लोग भी हैखम्बे भी है हरी-हरी पत्तिया निचे गिरी हुई है।

वाशिंग मशीने लगी हुई है

फ्रीज़ है ए.सी. है।

ऊपर मे छतरी भी है और तार भी दिखाई दे रही है पीछे में बहुत सारे घर है बगल मे स्कार्पियो है।

आगे मेंआगे की तरफ आप देखे तो बहोत सारे महिलाए और आदमी लोग है।

पीछे मे बहोत सारे माकने दिखाई दे रही हैआगे में दो बाइक हैजिसके ऊपर हेलमेट है।

एक्सक्लूसिव डीलर पी.के. एंटरप्राइज है।

और टेबुल भी रही हुई डम्बस भी है।

निचे हरी-हरी घास हैआगे मे देखु तो बहुत सारी खेत है।

लोग भी अगल- बगल से जा रहे है हरी-हरी घास दिखाई दे रही --

देख सकते है इंट्री गाते भी है और आगे में एक डस्टबिन भी हैं।

पिले चमकीला--